सामने कुछ बैनर्स दिखाई दे रहे हैं।

मुंह पर ब्लर दिखाई दे रहा है।

यह कोई मंदिर दिखाई दे रहा है।

दे रहे रहा है कुछ इंसान दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक सूखी डाल पर चिड़िया बैठी दिखाई दे रही है।

चेयर्स पर बैठे हैं जिनके मुंह पर ब्लर दिखाई दे रहा है खिड़कियां दिखाई दे रही है।

और एक अखबार दिखाई दे रही है।

यह एक लकड़ी से बनी--

मछलियां बेचते दिखाई दे रहे हैं।

छोटी-छोटी मछलियां दिखाई--

पैर के पास कुछ पैसे दिखाई दे रहे हैं।

पढ़ाई करते दिखाई दे रही हैं।

पीछे गेट दिखाई दे रहे हैं।

यह कोई प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है।

जहां एक बैनर लगा हुआ है जहां जतोग लिखा हुआ है।

बहुत सी ज्वेलरीज दिखाई दे रही है।

बिंदी के पैकेट दिखाई दे रहे है।

झुमके चूड़ियां दिखाई दे रही है।

यह जूस की दुकान दिखाई दे रही है जहां ऊपर कृष्णा ट्रेडर--

यहां चारों तरफ ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है।

खेलते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहे हैं जिन पर ब्लर नजर आ रहा है।

यह एक बेकरी की दुकान दिखाई दे रही है।

जिनके मुंह पर ब्लर दिखाई दे रहा है।

चारों ओर बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी इसे बेचते दिखाई दे रहा है।

लड़का स्टाइल मारते दिखाई दे रहा है।

यहाँ बहुत से लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है।

यह कोई ढाबा दिखाई दे रहा है।

कंप्यूटर्स चेयर्स दिखाई दे रहे हैं।

लेडीस बैठी हुई दिखाई दे रही है।

ओर बहोत सी पोस्टर लगी हुई है।

दर्शक के रूप में बैठे हुए हैं और--

बैठी हुई दिखाई दे रही है।

सभी के चेहरे पर ब्लर दिखाई दे रहा है।

छोटा सा देवते का मंदिर दिखाई--

पीली और काले कलर की दिखाई दे रही है।

एक स्टैचू दिखाई दे रहा है कुछ गाड़ियां चलती दिखाई दे रही है।

एक मूर्ति दिखाई दे रही है।

जहां एक पेड़ दिखाई दे रहा है और आस पास बहोत से इंसान दिखाई दे रहे हैं।

बड़े बड़े पेड़ और एक बाइक दिखाई दे रहा है।